बीच में खड़े होकर जिस अ जगह लाइन लगती है वो जगह दिखाई गई है और सामने एक पेड़ दिख रहा है और ये कुछ लोग हैं जो--

सामने फूलों से सजावट भी की गई है।

गुब्बारो से सजाया गया है बीच में झूमर लगा हुआ है।

और नीचे बहोत सारे टेबल और चेयर्स रखी हुई है।

वे ट्रेन लगी हुई है साइड में बहुत सारे खंभे हैं और रेलवे स्टेशन लग रहा है।

और उनके ऊपर कुछ सामान भी रखा हुआ है।

एक टेबल पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए हैं सामने--

चार सीट बैठने की बिठाई गई है एक स्लिप रखी हुई है एक चेयर है।

बीच में एक खंभा भी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में हमे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी चेयर रखी हुई है और एक टेबल भी रखी है।

एक टेबल पे एक नोट बुक और पेन रखा हुआ है और ऊपर छत में बहुत सारे पंखे लगे हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र मे हमे एक बहोत बड़ा खाली मैदान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक घर दिखाया गया है और घर के पास में पार्क बना हुआ है।

दो पेड़ खेड़े है और दो खंभे भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

मरीग दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर की तरफ देख रहा है हिरण दिखाई दे रहा है।

और पीछे भी उसमें कुछ बना हुआ कोई बड़ी मंजिल या कोई--

अलग अलग खानों में बहुत सारा सामान रखा हुआ है अलग अलग प्रकार का।

वाटर कूलर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ आरो भी लगा है।

और भी बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने खिड़की है।

इस चित्र में हमें कोई फंक्शन दिख रहा है जिसके स्टेज पर जिसमें स्टेज को सजाया गया है और कुछ--

कुछ डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान में बहोत सारी लाइटे लगी हुई है और बहोत सारे लोग बैठे हुए है।

और मंदिर के पीछे कुछ घर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकानों में लाइटें जल रही हैं और दुकान के सामने--

इस चित्र मे हमे एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे मे एक बड़ी सी एल_ई_डी चल रही जिसपे कुछ चलाया जा रहा है।

नीचे दो सीढ़ियां बनी हैं स्टेज के --

इस चित्र में हमें स्टेज पर कुछ औरतें दिख रही है जिन्होंने साड़ी--